यह एक मस्जिद जैसे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में बहुत सारे गुब्बारे को सजा दिए हैं और कुछ लड़की बाहर में भी नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं और गुब्बारे सब भी फूले हुए हैं।

यहाँ एक कमरा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है कागज से कुछ बनाए हुए है और कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है लाल दिख रहा है पीला दिख रहा है सफेद दिख रहा है उसके पीछे में कुछ पर्दे जैसा भी बना हुआ नज़र आ रहा है और सब चीज दिखाई अच्छे से दे --

यह एक मंदिर दिखाई दे रही है जिसके अंदर में बहुत सारे दुर्गा माता की मूर्ति है उसके किनारे में भी बहुत छोटे-छोटे मूर्ति दिखाई दे रही हैं।

और लोग इधर-उधर चलते नज़र आ रहे है दो व्यक्ति उसके अंदर में है और उसके पीछे में भी कुछ लाइटस सब लगी हुई है चाँदनी भी है।

यहाँ पे दूल्हा-दुल्हन खड़े हुए नज़र आ रहै हैं और एक दुल्हन घूँघट को उठाए हुए किसी देख रही है उसके गले में बहोत ज्यादा माला भी है।

और ऊपर में हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे है और पत्थर सब भी अच्छे से दिखाई दे हुए प्रतीत हो रहे है और बादल सब अच्छा से साफ दिखाई दे रहा है और अच्छा दिख रहा है।

वह दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा है और एक व्यक्ति चलते हुए भी दिखाई दे रहा है उसके दोनों बाजू में खिड़की लगी हुई है और कांच भी लगी हुई है।